उसमें बुलु लाइट है। बत्ती तीन धरी में लाइट लगल है। उसके बाद वहाँ पे हरा-हरा दिख रहा है लाइट बत्ती फिर गुम्बद --

ऊपर में वही रंगा-रंगा सा महसूस हो रहा है। निचे छोटा पेड़ छोटा-छोटा पौधा है और उधर पा --

गोल-गोल घेरा हुआ है। अ एक बड़ा सा घेरा हुआ है। एक छोटा-छोटा दोगो उधर घेरा हुआ है अ दोनों साइड में फूल का पेड़ उ गाछ सब है।

बहुत अच्छा घर है डिज़ाइन दोगो पाया लाल कलर से है अ इधर उम यहाँ पे एक मूर्ति भी है।

करीब वही सात आठ टॉफी का बोतल सब है बडा जार और नीचे उ शोकेस में लगा हुआ है काउंटर में |